यानि उस बंगले का काम चालू है| उसके बगल में एक बड़ा-सा कम्पाउन्ड किया हुआ है| उस कम्पाउन्ड में थोड़ा-सा गेट दिखाई दे--

इस मर्ति का कलर सब काला कलर लगा हुआ है| उसके अंदर काँच के ऊपर रखे हुए हैं| उनकी इनफार्मेशन एक कार्ड के ऊपर लिखी हुई रखी है।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइड का पिक है।

ये एक गैरेज का दुकान दिखाया हुआ है उस दिवार पे यूनाइटेड कार केयर ऐसा नाम लिखा हुआ है।

उसके बगल में थोड़ा-सा ब्रॉउन कलर का एक गाय खड़ी हुई है उसके बगल में काले कलर --

वो काँच के अंदर रखी हुई है| उसके बगल में एक बड़ी-सी मूर्ति लगाई हुई है काले रंग की और वहाँ बोहोत से लाइट जल रहे हैं।

यह एक सरकारी दवा वितरण कक्ष है।

यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइड का फोटो है यहाँ जे.सी.बी एक जमीं में गड्ढा कर रहा है और दो तीन लोग वहां--